और कुछ एक्टिवा और बाइक रखी हुई है।

उस बैंक का नाम कैनरा बैंक है।

केनरा बैंक के नीचे सिंडिकेट भी लिखा हुआ है।

बैंक के बाहर काफी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं।

उस शॉप में काफी सारे कस्टमर्स बैठे हुए हैं।

वह लड़का किसी गुफा के नीचे खड़ा हुआ है।

वहां एक पर्पल कलर की साड़ी खुली हुई रखी है।

एक लेडिस फोन पे बात करती हुई नजर आ रही है।

वा एक लकड़ी का झूला रखा हुआ है।

और वहां दो लेडी कस्टमर भी आई हुई हैं।

वह रोड से सीधा सीधा जा रही हैं।

वह वाटर पार्क काफी ज्यादा बड़ा है।